और खिड़कियां दरवाजे भी नजर आ रहे हैं। इसमें शीशा लगा है। दो तीन पंखे भी है।

इसमें मोटरसाइकिल भी दिखाई दे रहा है। टीन की छावनी की गई है। पीछे कई घर और पेड़ और भी नजर आ रहे हैं। --

इसमें एक विद्यालय का कक्षा दिखाया गया है। कक्षे में खिड़कियां लगी हैं। खिड़कियों में

और बिजली का खंबा है। कई आदमी दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा सा नीले रंग का बोर्ड है और वो पीछे पेड़ भी है।

बेड लगा है। बेड पर एक आदमी लेटा है। उसके बगल में एक आदमी खड़ा है।

इसके बगल में एक और मीनार जैसा नजर आ रहा है जो गोल गुंबद का है। इसके बगल में कई सारे पेड़ दिखाई दे रहे--

कई बल्ब जल रहे हैं और पंखे भी लगे हैं। इसमें खिड़की और रोशनदान भी दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में एक बड़ा सा सूखा मैदान दिखाई दे रहा है। मैदान में एक बड़ा सा खंबा नजर आ रहा है।